यहां पर मोर की प्रेजेंटिंग बहोत ही खूबसूरत लग रही है।

स्पीकर्स और भी बोहोत सारी चीजें यहां पर मौजूद दिख रही हैं सी_एफ_एल जैसी लाइट भी हैं।

शायद ये बेसमेंट किसी मॉल या किसी पिक्चर हॉल का है।

यह एक मोबाइल शॉप है।

एक सब्जी वाला बैठ कर अपनी सब्जी बेच रहा है।

एक दुकान है जी_एम रेफ्रिजरेटर के नाम से--

एक और शॉप हैं जहां पर कूलर और फ्रिज मिलते है साथ में यहां पर रोड है एक व्यक्ति जा रहा है रोड पर--

यहां पर एक कोचिंग इंस्टिट्यूट लग रहा है।

ये शायद रेलवे के ऊपर बना है एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म को जाने के लिए यहां पर सीढ़ियां भी बनी हुई हैं।

इसके सामने ही एक गेट भी है जहां से ये कार को बाहर निकाला जाता हैं।

यहां पर रेलवे की टिकट मिलते हैं अनारक्षित एवं रक्षित टिकट घर है।